और यहां पे बहुत सारे आभूषण भी पहनाए गए हैं।

की लोहे के हैं।

के बाहर एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ दिख रहा है।

जहां पे बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई दिख रही है।

यहां पे पत्थरों पे दीवारों पे कुछ चॉक से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और बुक वर्ल्ड भी यहां पे तीन व्यक्ति दिख रहे हैं।

इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा दिख रहा है।

इसमें पानी भरा हुआ दिख रहा है।

वहाँ एक बोलेरो भी दिखाई दे रहा है।

ये गुब्बारे का चित्र है।

और यहां पे एक बाइक भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे कांच के दरवाजे लगाए लगे हुए दिख रहे हैं।

और यहाँ पे दो चेयर दिख रहे हैं।

ये एक दुकान का चित्र है।

जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान और पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

एक हॉल का चित्र है।

यहां पर एक चेयर दिख रहा है।

ये एक किसी प्रकार का चौक का चित्र है।

वहां पे दो लाइटें लगी हुई दिख रही हैं।

यहां पे कुछ चेयर भी दिख रहे हैं और पानी के बोतल भी दिख रहे हैं।

वहां पे डोंट स्टील फॉर लेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें पीले कलर के पानी दिख रहे हैं।

जिसमें गंदे पानी दिख रहे हैं।

सामने में एक दुकान का चित्र है यहां पे शीतल मिनी मॉल लिखा हुआ है।

वहां बहुत सारी पानिया भी दिखाई दे रही है।

और ये पानी कहीं पीले और कहीं हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं।

ये एक गार्डन का चित्र है।